एक लड़का वहां अ आ के खड़ा है।

और शीशा लगा हुआ है।

और कई प्रकार के मंदिर का यहाँ --

मेहँदी का फूल इकट्ठा करके मार्केट में लोग बेचते हैं ।

बच्चे कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे हैं।

और टीचर इनको फ्री छोड़ दिया है।

चिल्लर्स है ये सारा चीज होलेसले मे मिलता है और ये बड़ी दूकान है।

पूरा खंडहर है और ये किला बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें बनी हैं। सब दीवारों पर ही घांस उग आये हैं।

इनको देख लेने के बाद तो मन कर रहा है कि इनको गोद में उठा लू।

सारी औरतें और लड़कियां पार्टी कर रही हैं।

वक्रांगी का ये कोलाब्रेसेशन में है।

और इसका उपयोग प्रतिदिन आने वालों में से एक है।

बहुत बढ़ियां-बढ़ियां बाल बना रहा है कर रहा है।